ये मेला लगा हुआ है मेले का बैक साइड होता है ये काफी कलरफुल इसका गेट बनाया हुआ है पिंक कलर ग्रीन कलर --

एक व्हीकल्स का शोरूम खोला गया है जो दो व्हीकल है वो टंगी हुई है